पहाड़ी एरिया सा लग रहा है और यहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे भी है जो बहोत सारे नजर आ रहे हैं छोटी छोटी है और --

जो खड़ा हुआ नजर आ रहा है ब्लैक पेंट है व्हाइट चप्पलें है ग्रीन कलर का शर्ट पहन रखा है कैमरे से शूटिंग कर रहा है।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

ए_सी वगैरा भी लगी हुई है और यहां पे पंखे भी लगे हुए हैं ट्यूबलाइटें भी लगी हुईं हैं तार भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं।

और यहां पे एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है जिसकी शकल नहीं दिखाई दे रही है और यहां पे अंदर भी लोग बैठे हुए है।

ऐसा नाम लिख रखा है और यहां पे बहोत सारी व्यक्ति है जो काफी खड़े हैं एक दो इधर जा रहे एक दो उधर जा रहे है और पास में --

यहां पर रास्ता है चारों तरफ का जहां पे रोड भी बनी हुई है और--

मकान भी बना हुआ पास में नजर आ रहा है और यहां पर टंकी भी लगी नजर आ रही है और--

जहां पे बहोत सारी स्कूटी खड़ी हुई नजर आ रही है जिनपे जिनको ढका हुआ है और बाइक भी खड़ी हुई नजर आ रही है और एक खंभा भी है खंभे पे --

और व्यक्ति भीं खड़ा हुवा नजर आ रहा गाड़ी के पास खड़ा हुवा एक दुकान के अंदर खड़ा हुवा व्यक्ती नजर आ रहा है और ये स्टूलें भीं पड़ी हुई नजर आ रहीं हैं।

और मतलब फ्रिज है यहां पे सोफा ये सब सारा नजर आ रहा है बहोत सारा सामान पड़ा हुआ नजर आ रहा है इसमें टूल वगैरा--

और छोटे छोटे और काफी अच्छी डिजाइनिंग बनाई गई हुई नजर आ रही है और यहां पे पेड़ पौधे भी आस पास --

पास में गैस वाली टंकीयां भी है और भारतीय प्रदर्शनी पाई है।

टूल सा पड़ा है जिसमें कपड़ा साफ कर लेटा हुआ है नजर आ रहा है और यहां पे देखने के लिए ये है कि बहोत सारे कार्टून यहां पे --